यहां पे बहोत सारी दो पहिना वाहन खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे एक पंछी भी दिख रही है।

यहां पे पानी भी दिख रहा है।

यहां एक पोस्टर लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।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

यहां पे बहुत सारे फूल भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक एयरपोर्ट का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहोत सारे महिलाएं और पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कुछ सूखी हुई लकड़ियां भी दिखाई दे रही है।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

यहां पे बहोत सारे लोहे के सरिया भी दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत सारी बोतले भी दिख रही है।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

यहां एक रास्ता गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक कार भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक पुरुष भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक मॉल का दृश्य दिख रहा है।